और एक किसान चारपाई पे बैठे हुए हैं।

पहाड़ है जो काफी दूर तक फैला हुआ है।

यामाहा एजेंसी के राइट साइड में टी.वी.एस. एजेंसी है।

और गड्ढे के अंदर सरिया से बना पिलर --

काफी अच्छा दिखाई दे रहा है।